और यहां पे एक उँ स्कूल टीचर देख रही है इनको क्या कर रे हैं वहां पे कुर्सियां रखी है यहां पे एक फ्लावर रख--

ये रेलवे स्टेशन है रेलवे स्टेशन पे यहां पे एक सुधा पार्लर है जिसमें खाने पीने की चीजें बनती है चाय वगैरा बनती मिलती है।

ये एक प्ले स्कूल का प्ले स्कूल का दरि बाहर का ग गेट है यहाँ पे लिखा हुआ है द चेरी लैंड रीड --

ये शि सा श्री साई कॉलेज एजुकेशन बढ़ानी पठानकोट ल--

ये मिठाई की दुकान है और यहाँ पे इतने सारे कोल्ड ड्रिंक वगैरह रखी हुई हैं एक साइड में वहाँ पे --

और यहां पर रेड रो रोजेस लगे हुए हैं व्हाइट पिंक कलर के रोजेस लगे हुए हैं और यहां पे ऊपर की साइड भी सजी हुए है ये यहां दोनों गेट भी सजे हुए।

हाईवे है और यहां पे इस साइड के लेफ्ट राइट में यहां ऑटो जा रहा है और वहां पे राइट साइड में--

खुर गैरेज का सामान सा लगा हुआ है वहाँ पर दो लड़के बैठे हुए हैं उकड़ू बैठे हुए बातें कर रहे हैं अम एक बाइक पे लगे हुए हैं ठीक करने के लिए --

लाल सी टी-शर्ट की चैक वाली टी-शर्ट में एक बंदा बैठा हुआ हैं वहाँ पे एक ब्लैक टीशर्ट में खड़ा हुआ हैं ।

और वहां पे एक साइड में बहु एक साइड में बहुत सा सामान रखा हुआ--

ये कोचिंग सेंटर है यहाँ पे सामने ब्लैक बोर्ड बहुत बड़ा ब्लैक बोर्ड वाइट फंकर लगा हुआ है यहाँ पे टीचर खड़ा होकर कुछ समझा रहा है और लिखा हुआ है।

और यहां पे इतनी बड़े बड़े पे पेड़ पौधे भी लगे हुए हैं सामने एक बोर्ड लग रहा है और यहां पे एक बिजली की बिजली का खंभा लगा होगा ट्रांसफॉर रखा हुआ--

ये गार्डन हैं गार्डन पे यहाँ पे पत्थर की कुर्सियां रखी हुई हैं और यहाँ पे साइडों में--